एक आदमी है जो बनियान पहना हुआ है एक डब्बा है डब्बे का ढक्कन येलो है।

जिम रूम है रूम का कलर वाइट है ब्लॅक पंखा है ब्लॅक बॉल है मछली है मछली का कलर ऑरेंज है वाइट है।

बस है बस का कलर रेड है येलो है ऑटो रिक्क्षा है उसका कलर ब्लैक है येलो है।

रोड है रोड के बगल में एक बोर्ड है बोर्ड का कलर ब्लू है रेड है।

ऑफिस है ऑफिस का कलर वाइट है ब्राउन है येलो है ब्लैक कलर का बैग है फर्स का कलर पिंक और ब्राउन है।

एक आदमी है वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है ब्लैक कलर का माक्स लगाया हुआ है एक आदमी है जो बैठा है रेड कलर का जैकेट पहना हुआ है।

एक आदमी है ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है ब्लॅक कलर का पॅन्ट पहना हुआ है।

वाइट कलर का पैजामा है एक आदमी है वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।